आदित्य सामने तरफ उनके गुरुजी भी बैठे हुए हैं और बगल में डॉक्टर अंबेडकर जी का फोटो लगा हुआ है।

की ये फिर पार्टी चल रही है रात में और एक ठो लड़का उसी के अब ब पार्टी में एक ठो फोटो खिंचवाया है।

यह तस्वीर में दिखाई जा रही है कि--

और बहोत सारे पेड़ पौधे भी हैं।

ऊपर आसमान में नीला कलर का आसमान है और सफेद कलर का बादल है।

जिसमें की ग्राहक लोग आए हैं कपड़ा खरीदने के लिए।

और एक ठो आदमी दुकान में बैठा है और एक ठो कस्टमर सामान खरीदने के लिए आया है।

जिसमें बच्चों का तैरने के लिए--

जिसमें ऑफिस में कोई नहीं बैठा है एक ठो लैपटॉप रखा हुआ है टेबल के ऊपर।

तीन ठो झंडा भी लगा हुआ है और गेट भी बनाया हुआ है।

जिसमें से पहाड़ के अंदर से पानी आ रहा है।

एकठो बच्चा गार्डन में बइठा है।

और ऊपर छत में कई सारा लाइट वगैरह लगा हुआ है।

के फोटो में दिखाया जा रहा है।

पत्तों का कलर हरा है ये फोटो में दिख रहा है।

परम बहोत सारे लोग घूमने आ रहे है।

ये फोटो में दिखाया जा रहा है।

और फिर वो कपड़ा पहन के ऑफिस जाएंगे और गेट के सामने भी लॉन्ड्री का बहोत बड़ा पोस्टर लगा हुआ--

हां सड़क में तो पानी पूरा भरा हुआ है बदली का मौसम भी किया है।